नदी भी दिखाई दे रही और नदी जो थोड़ा ब्लैक कलर में है।

आसमान जो ब्लू कलर में है और बादन भी दिखाई दे रहा है।

बहुत जरा अह पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

वो और उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है।

तार भी दिखाई दे रहा है रस्सी भी दिखाई दे रहा है।

इक घर है ओ टीना से बनाने वाला--

गर में जो कुछ गेट भी दिखाई दे रहा है।

गेट का ऊपर में जो कुछ कपड़ा भी दखा हुआ है टांग के।

गेट भी दिखाई दे रहा है बाइक भी दिखाई दे रहा है।

यह जो एक घर का अंदर का है।

पीछे में एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो एक टी_वी भी दिखाई दे रहा है और स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा है और इसमें जो तार भी आ रहा है।

ऊपर में जो कुछ छतरी जैसे भी रखा हुआ है वह भी अलग अलग कलर का है।

यहां में जो बहुत लोग दिखाई दे रहा है और वह लोग जो बर्थडे पार्टी मना रहा है।

उ लोग का पीछे जो कुछ पर्दा भी दखा हुआ है।

सामने में जो एक लड़का बैठा हुआ है और ओ भी जूता पेहन रहा है।

तो टोपी भी पहन रहा है वो भी--

कहां सामने में जो एक आदमी भी बैठा है और वह जो शायद कपड़ा पहन रहा है।

तार भी दिखाई दे रहा है।

डस्टबिन जैसा भी दिखाई दे रहा है।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

इसमें जो कुछ सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है चेयर भी दिखाई दे रहा है कुछ--

पेर भी दिखाई दे रहा है कुछ दर्शी भी दिखाई दे रहा है।

और सी_सी कैमरा भी दिखाई दे रहा है लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

पोस्टर भी है और उसमें जो ओपन लिख के है।

नीचे में जो पिल्लर भी दिखाई दे रहा है और बैलून भी है और ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।

ये में जो लोहा से बनने वाला कुछ पोस दिखाई दे रहा है।

इक खिलकी भी दिखाई दे रहा है और वो भी बंद करके रखा हुआ है।